और बैठने का भी सुविधा है। सोफ़ा है कुर्सी है और पेड़ वगैरा भी है और काफी अच्छा रूम है और काफी बड़ा लग रहा है देखने में और ब्लैक कलर का कलर किया हुआ है साइड साइड में खिड़की वगैरा में। काफी अच्छा लग रहा है देखने --

जो कि यहाँ पे डांस कर रही है। नृत्य कर रही है और काफी अच्छा से अपने आप को डेकोरेट किया गया है। साड़ी पहनी हुई है रेड कलर का और काफी अच्छा-अच्छा सा चूड़ियाँ पहनी है रेड कलर का। कान वाला पहनी है और काफी सुंदर लग रही है देखने में और काफी अच्छा स्टेप कर रही है डांस कर रही है।

तो यह है एक बड़ा सा फील्ड |